इसमे सामने आप शीशा देख सकते हो शीशे में वो अपने आप की फोटो ले रहे हैं पीछे आप और देख सकते हो की लोग इसमे आपको नही दिखाई देंगे लेकिन ये ब्लैंक हैं कई फोटो लोग देख--

इसमें बभी आप देख सकते हो ये मछली की मार्किट है इसमें जितने भी लोग है वो सब जितने भी लोग है नीचे आपको मछली बेचते हुए दिखाई देंगे |

आपको एक आदमी दिखाई देगा जो अपनी फोटो लेते हुए दिखाई दे रहा है पीछे आपके मशीने दिख रही है मशीने के अलावा आप देख सकते हो येलो कलर का कुछ दिख रहा है|

और इसी ये पंडाल हैं पंडाल आप देख सकते हैं पंडाल में कुछ प्रोग्राम हो रहा है जिसमें लोग जो हैं फोटो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आप चेक कर सकते हो फोटो लेते हुए इसमें देख रहे हैं।

यहां आप देख सकते हो ये क्लिनिक दिख रहा है क्लिनिक में आपको ऊपर एक नीले कलर का बोर्ड दिख रहा है इसमें आप नीचे आप जो है दरवाजा भी देख सकते हो दरवाजा एक खुला हुआ है और एक क्लोज दरवाजा हैं।

पेड़ के अलावा भी आप देख सकते हो की एक जो हैं अ अ ऑरेंज कलर का कुछ जो हैं पत्थर के ऊपर बना हुआ है पत्थरों पर ऑरेंज कलर के अलावा ग्रीन जो हैं कुछ भी हैं पीछे आप देख सकते हो।

की पिछे आपको कुछ नही दिख रहा है लेकिन बस यही दिख रहा है की केवल आपको शीशा दिख रहा है इसमे कुछ जीने दिखे ऊपर एक आपको है जो है गुम्मद का आकार का बना हुआ कुछ और आपको भी दिख रहा होगा ।

आप देखिये पटरिया बनी हुई है पटरियों के पीछे आपको एक नदी जैसी तालाब दिख रहा है और बीच में आपको एक जो है लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।